यह अमरूद है यह हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है.

जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और यह पेट के लिए.

दौड़ना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है दौड़ना एक सबसे अच्छा व्यायाम होता है.

दौड़ने से हमारा हार्ट बीट अच्छा होता है।

हमारे जीवन में पेट्रोल और डीजल का बहुत .]

ये गोजा ढोने का काम करता है यह हमारे देश में धोपियों के बहुत काम आता है.

ये एक ऐसा लोहे का दीवार होता है जिसे हम जब चाहे खोल और बंद कर सकते हैं।

इस ट्रेन में बच्चों के मनोरंजन का का प्रभु प्रमुख अवसर मिलता है इससे बच्चे खुश होते हैं और.

पंडालों में हमारे यहाँ शादियाँ पार्टियाँ मनायी जाती हैं।